जिसमें काफी मात्रा में सुविधाएं लिखी गयी हैं और यह है एक लोहे के दरवाज़े पर चिपका--

यह एक खाने के व्यंजन की दृश्य है जहाँ पर--

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे में एक पलंग रखा दिखाई पर रहा है।

एक शिक्षा संस्था का दृश्य है जिसमें लोहे के दरवाजे लगाए गए हैं।

यह एक फलों की दुकान का दृश्य है जिसमें काफी मात्रा मे फल दिखाई दे रहे है।

--एक रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है ये दृश्य में एक बड़ी रेल दिखाई पड़ रही है ।

कुर्सियों पर सफेद रंग का कवर चढ़ाया गया है।

दुकान में तीन तरह की जैकेट रखी दिखाई पड़ रही है जिसमे एक का रंग हरा दूसरा नीला --

यह एक ऑफ कार्यालय का दृश्य है कार्यालय में--